यहां पर खुदाई चलती हुई दिखाई दे रही है।

और एक लोहे का गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पर एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक मॉल दिखाई दे रहा है मॉल बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।